लोहे का जाल भी नजर आ रहा है जो ग्रीन कलर का पीछे की ओर है।

सामने एक खिड़की लगी है जिसमें एग्जास्ट लगा हुआ है।

ये एक सामने वॉल व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और एक अलमारी खड़ी है यहां पे।

दो काउंटर राइट और लेफ्ट रखे हुए हैं।

उसी के ऊपर फ्लैग लखा हुआ है एक के ऊपर और एक के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है।

इसके अंदर सीलिंग बनी है डिजाइन वाली जिसके अंदर लाइटें लगी हैं।

सीट नजर आ रही है जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं रेड कलर की।

इसके अंदर लाइटें गोल और चौकोर में लगाई गई हैं।

इसके अंदर एक वायर नजर आ रहा है जिसमें मक्खियां भी हैं।

बहुत सारे आदमी और लेडिस नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर इस्ट सीढ़ी के ऊपर स्टील की ग्रिलें लगाई गई हैं।

दीवाल जो छत पे की है वाइट कलर की नजर आ रही है।

छत पे ब्लैक कलर से पूरे में चारों साइड पेंट हुआ है।

एक आदमी खड़ा है एल्यूमिनियम का जो गेट लगा हुआ है इसके अंदर शीशा भी लगा हुआ है एक छोटी सी लाइट लगाई गई है इसके अंदर।

दो टैंक नजर आ रहे हैं जो लेफ्ट और राइट ग्रीन कलर के रखे हैं।

सामने दो स्कूटी भी हैं इसके अंदर।

और कपड़ा लपेटे बैठा है उसी के सामने एक प्लास्टिक का डिब्बा रखा और इस पे ढक्कन बंद है।

एक नीली सी मशीन नजर आ रही है जो कोने मे रखी हुई है जिसके अंदर ब्लैक कलर का लम्बा सा मोटा सा वायर जा रहा है।

लोहे के कुछ ब्रिज पड़े हुए हैं जमीन के ऊपर।

और पीछे की ओर पेड़ भी हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं चारों की साइट ।

एक सिलेंडर रखा है जो आग बुझाने वाला है।

इसके अंदर प्लास्टिक के चौकोर में पांच भाग वाले पंखे रखे हैं।

इसके अंदर गोल्डन कलर की पट्टी भी लगी हुई है जो नीचे से डायरेक्ट ऊपर तक के जाती है।

और कुछ बुजुर्ग कुछ महिला भी खड़ी हैं यहाँ पे सामने।

इसके अंदर सोफे रखे हुए हैं।

इसके अंदर छोटी सी एक दीवाल उठी है जो ग्रीन कलर की है।

पीछे है। ऊपर भी दो लोहे की रोड लगी हुई हैं। सामने की ओर एक मकान नजर आ रहा है।

गुंबद वाला मकान है वाइट कलर का और पेड़ भी नजर आ रहे हैं तीन प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं।

इसके अंदर एक रेड कलर का गेट लगा है जो बहुत बड़ा है और बहुत चौड़ा है।

बहुत खूबसूरत और छत पे भी पेंट हुआ है बहुत खूबसूरत।